पेड़ पौधे लगे हुए --

ये बड़े भैया एक किसी लड़की का पर्स चेक कर रहे है। मशीन द्वारा और ऊपर कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है।

और ये माटी पड़ी हुई है और माटी में काफी घास उगी हुई है।